यहाँ पे हम देखते है की महारानी महारानी अस्पताल जगदलपुर मे है यहाँ बहुत बड़ी--

यहाँ एक सुंदर- सा एक होटल देख सकते है इस होटल का नाम होटल पार्थ --

यहाँ पे आप एक घर देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा घर है यहाँ पे दो तीन कार खड़े हुए है एक--